कुछ ऊपर कुछ रंग-बिरंगा सा कलर भी करा हुआ हैं सीढ़ी भी लगी --

यह सामने मंदिर दिखाई दे रहे हैं।